और वो बिल्डिंग के बाहर में एक--

भी सजाया हुआ है जहा पे लाल रंग के।

बीच में से आज आने जाने की जगह की गई है और साइड में कुर्सियां लगी हुई है।